ये हम यहाँ देख पा रहे है कि ये एक डैम के जैसा लग रहा है और देखिये ऊपर में एक साइड से पुल पुल पे बना हुआ है और--

अ खाने मे खट्टे लगते हैं और बहुत ही स स स सब्जी बहुत टेस्ट भी आता है और ये बहुत ही सुंदर टमाटर है और ये दिखने मे बहुत ही अच्छे --